इस पिक्चर में हमें एक बड़ी इच्छा हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है और --

ग्राउंड के पास में काफी बिल्डिंगे बनी हुई हैं।

फूल लगे हुए हैं मालाएँ लगी हुई हैं।

छोटे-छोटे पौधे दिखाई दे --

माइक लगे हुए हैं। डी जे के ऊपर एक व्यक्ति खड़ा है।

रेलवे स्टेशन पे एक मालगाड़ी खड़ी हुई है।